लगता है की काफी कीमत से बनाया है। और बहुत ही अच्छा दिखने मे लग रहा है काफी जादा इमेजिंग है।

यह मेरिज हाल लगता है शायद मेरिज हाल ही है। जो काफी अच्छा सजावट की है काफी जादा खर्च की है इस मेरिज हाल में बहुत ही अच्छा बहुत ही ज्यादा लोग हैं।

इस से हम लोग इंग्लिश मे।